एक रास्ता है रास्ते के बगल मे सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया है जिसमे कांचे लगी है।

एक रास्ता है रास्ता बगल में बडासा टेन्ट लगा है चार साइड ईंटे दीवारे है एक स्टेज है बिच मे इसमें तीन लडके और दो लडकिया डान्स कर रही है।

एक दो पेड़े है जो काफी हरा भरा है आकाश का रंग नीला है मकान- मकान जो काफी पुराना --

एक रास्ता है रास्ते मे एक बैंक ऑफ इंडिया है जोकि निचे कांचे लगी है एक ए _सी लग़ा ये दो मंजिले का है।

कुछ पौधे है जो की हरे भरे है पीछे की ओर पेड़ पौधे जो कि कई प्रकार के हरे भरे आकाश का रंग नीला है।

चारो साइड बिच में चारो साइड लोहे लगी है जिसके बिच में एक चट्टान बनी है जो में प्लस का चिन्ह बना है कुछ लोग बैठे है आकाश का रंग सफ़ेद--

एक रास्ता है रास्ते के बगल में एक बड़ा सा मकान है एक कमरा है जिसके दीवार में एक शिलाये बनी है चित्र बनी है।

बिजली के खंबे है जिनमें तारे गए है बिजली के पेड़ पौधे है जो की हरा भरा है एक पोस्टर है जिसमें लिखा है ए.टी.एम. चौबीस आवर आकाश रंग सफ़ेद है।

एक रास्ता है रास्ते में एक ऑटो है अगल बगल में कुछ लोग है बसे खड़ी है बिच में बिजली के खंबे लगे है मकान है एक छोटा सा दूकान है जिसके ऊपर बड़ा सा पोस्टर लगा है।

एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है जिसके पानी का अ जिसका पानी का रंग नीला है एक आदमी अंदर है एक बड़ा सा ड्रम है।

एक बड़ा सा मकान है मकान तीन मंजिले का है उसके सामने छोटे छोटे मकान भी है।